पानी में नाँव दिख रहा है। उसके बगल में जमीन है पेड़ -पौधे हैं ।

ये ये कोई भ्रमण स्थल है यहाँ पे सीढ़ी लगी हुई है।

ये काली माँ का प्रतिमा है ये कोई मंदिर है ।

और ये जो है पुराना बिल्डिंग है जिसमें की --

देखने में बहुत ही सुन्दर है रात का समय है।